जैसे की मुझे एक बहुत बड़ा ऑफिस दिखाई दे रहा है यहा पर तीन शटर है वो भी लोखंड के है जो की एक दम ओपन है एक पंखा दिखाई दे रहा है नीला कलर की टेबल दिखाई दे रहा है।

जेसे की मुझे दिखाई दे रहा है एक पतरे का दुकान है और यहां पे बहुत सारे बड़ा बड़ा टायर रखा हुआ है।

और अंदर भी एक रूम है लाइट चालू है सीमेंट है नीचे।

जेसे की मुझे ये दिखाई दे रहा है एक दुकान है दुकान के अन्दर अलग अलग शैल में सब सामान रखे गए है।

साबुन रखा गया है फेविकोल रखा गया है स्केच पेन रखा गया है पेन रखा गया है ब्लू कलर का कपडा रखा गया है कुर्सी पे कॉलगेट --

एक बड़ा सा दुकान है उसके अंदर बहुत सारी चीजे रख्खी गई है और वो बॉक्स पे एक पोस्टर पर एक लड़की छपी है।

जैसे कि मुझे यहाँ पे एक घर दिखाई दे रहा घर के बहार एक छोटी सी बल्टी दिखाई दे रही है और बाइक खड़ा गया है।

जेसे की मुझे एक दूकान दिखाई दे रहा है दूकान के अन्दर फ्रिज है फ्रिज के अन्दर बोटल है पेप्सी है पानी का बोटल है फ्रूटी है और बिस की है।

एक परचा छपा हुआ है और अंगूर काले रंग के है।